यहां पर शीशा लगा हुआ है जिसका कलर व्हाइट और लोहे का मदद से बनाया गया है ।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का दृश्य है यहां पर बहुत सारे घर भी है।

एक आदमी पढ़ा रहा है जिसका शर्ट का कलर है पीला।

बहुत सारे फेन भी लगे हुए हैं और एक कैमरा भी है जिसका कलर व्हाइट और ब्लैक है।

खिड़की भी है जो लोहे का मदद और शीशा का मदद से बनाया गया है।

नीचे में बहुत सारा सामान रखे गए हैं और ऊपर में व्हाइट प्लास्टिक टांगा गया है ।

यह एक सोरूम का दृश्य है जहां पर बहुत सारे गाड़ी लगे हुए हैं।

जहां बहुत सारे सड़क भी हैं और बहुत सारे ईट पक्खल भी है।

हल्का ब्लू कलर का टी शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर का जींस पहनी है।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

बाल्टी है जिसका कलर पीला है और एक आदमी भी पानी भर रहा है और बोल बजाज लिखा हुआ है |

बहुत सारे पर पेड़ पौधे भी हैं और बहुत सारे शीशे भी लगे हुए हैं।

और वाइट बोरा भी रखा गया है और औरत पहनी है साड़ी पीला कलर का।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य यहां पर बहुत सारा आदमी लोग खड़े हैं जिसका शर्ट का कलर व्हाइट और जीन्स का कलर ब्लैक है और हाथ में पत्थर रखा हुआ है जिसका कलर व्हाइट है।